और उसकी दीवाले रेड पिंक कलर से पुती हुईं हैऔर इसमें बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए और बहोत से बिजली के तार भी गए हुए है अंदर एक बहोत बड़ी--

मस्जिद में एक पोस्टर भी लगा है लेकिन वो आधा फट चूका है मस्जिद के साइड में एक नारियल का पेड़ भी दिखा रहा है।